यहां पे मुझे इस फोटो में एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है।

वही है मुझे इस फोटो में--